और इधर एक सामने एक बड़ा गेट दिखाए दे रहा है उधर कुछ लड़के-लड़की भी घूमते हुए नज़र आ रहें हैं और इधर बिल्डिंग में भी कुछ विंडो है ।

और इधर में आगे इसपे ये टाइल्स भी लगी हुई है इधर और इधर में एक पेड़ सा दिखाई दे रहा है साइड में और साइड में होकर ये बिजली की तार भी निकले हैं।

और इस में बग साइड़ में भी यह बजरंग बली की भी मूर्ति भी दिखाई दे रही है और इसके पीछे बड़ी डिजाइन का दीवाल सा बना हुआ है।

देखिए ये एक चार पहिये की गाड़ी खड़ी हुई हैऔर इसका इसके आगे इसका नंबर भी लिखा हुआ है यू.पी का नंबर है।